लफेक ले रहें हैं यहाँ पर पनी तांदुळ हैं पेड़ पौधे दिख रहें हैं लड़का लड़की साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पर।